समुंद्र के आगे मिट्टी पड़ी है।

घरों के आगे दीवार है दीवारो पर लोहे की ग्रिल लगी है।

यह एक बजार है रात का समय है दुकानों के बाहर लाईटें जल रही हैँ।